एरिया है जोह की काफी जो है अच्छा स खासा एरिया में इसको बनाया जाता है जहा से है ज्यादा हाई भोल्टेज पावर को कम भोल्टेज में करके जो की ग्रामीण एरिया में जो की जरूरत के हिसाब से उस हिसाब से सप्लाई किया जाता है ताकि किसी के घर मे ओवर --

जेन्ट्स का ब्यूटी पार्लर है जो की सामने में बहुत सारा प्रोडक्ट रखा गया है और इधर कुछ जो कुशल कारीगर होते हैं वह इनका काम कर रहे हैं और दोनों चेयर पे कुछ लोग बैठे हुए हैं।

झुकाव रखते हैं लगाव रखते हैं जो कि काफी अच्छी बात है ।

और बस जो है अभी के समय में हर जगह है के लिए बस साधन आराम से मिल जाता है जो की कही के लिए अगर किसी को बस पकड़ना हो तो हर जगह के लिए बस मिल ही जाती है।